कुछ कार खड़ी दिखाई दे रही हैं और बाइक्स भी हैं।

रेलिंग लगी हुई है और इसके पीछे बनती हुई इमारतें भी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में एक सफेद इमारत दिखाई दे रही है।

एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

सारी खिड़कियां और दरवाजे भी दिखाई दे रहे।

ये एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा है सी_सी एस एयरपोर्ट ।

छत पे काफी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

दो लड़के हैं जो काम करते हुए दिख रहे हैं।

और उपर लालकिले की तस्वीर भी दिखाई दे रही है।

और शीशो की दीवार दिखाई दे रही है।

भी दिखाई दे रहे एक आदमी जो चेयर पर बैठा हुआ है।

और शीशे के बड़े दरवाजे और छत में एक लाइट दिख रहा है।

एक ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा है जिस पे क्रेज़ी क्राउड लिखा हुआ है एक ग्रे सोफा भी दिख रहा है।

तस्वीर में एक सफेद बंगला दिखाई दे रहा है।

पीछे लाल दीवार और एक कुर्सी भी है।